भवन के आस पास काफ़ी सारे गुम्बदे एवं बहुत सारे पेड़ पौधे एवं कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेज भी बना हुआ है।

यह एक जगह है जहाँ पर आसपास काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और कुछ छोटे-छोटे फूल भी लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारी कार भी दिखाई दे रही है।